इसमें पर्दों का काम पर्दा भी बोहोत अच्छा रंग डंग लगाया गया है ओर सामने एक बेड है।

और इस दूकान का माहोल भी देख सकते है का हर हर फेब्रिक में उसको कपडा मिल सकता है जो की पर्दों की दूकान पे मिल जाता है।

इसमें कोई घास तो ज्यादा नही उगी हुई है पर में एक बेठने की जगह के लिए बेंच लगा हुआ है।

वह की सफाई कर रहे है और सामने हम गुरुद्वारा देख रहे है और देख रहे है ये बोहोत ही भव्य जगह है।

यहां पर लोग आ जा रहे हैं ताकि वह प्रभु का दर्शन कर सके अपने प्रभु को याद कर सके।

बुध देव की याणी बुधा जो हमारे शांति के प्रतीक देवता माने जाते है जो बोध धरम के लोग उनमे बोहोत आस्था रखते है।

यह इन जो लदाख में लदाख में इनकी मान्यता बहोत ही मानी जाती है यहाँं पे जो लदाख के लोग जो होते है वो बुर्द बुध धर्म के होते है बहोत ही जादा धार्मिक होते है ये लोग।

गार्डन बना हुआ है और उसमे आप देख सकते है लाइटे लगी है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए है और साथ में देख सकते है बेठने के लिए बेंच रखा गया है।

यानी भारी मशीन में स्तेमाल किये जायगे और ये बिलकुल नये लग रहे है देखने में जैसे अभी बन कर आये हो और मशीन में लगने के लिये एक दम तैयार है।

खम्बा लगा हुआ है और इस दुकान पर तीन चार युवक भी खड़े हुए नज़र आ रहे है।

और एक दूकान के आस पास हम पेड़ ही पेड़ देख रहे है और दूकान के बाहर साइकिले वगेरा भी खड़ी है और काफी कूड़ा करकट भी उसके दूकान के बगल में पडा हुआ है।

दिए गए चित्र में हम देख सकते है ये नये नये ओटो है यानी टुक टुक रिक्शा जिनको हम इजी रिक्शा भी बोलते है इस ये नए है एकदम इनका--

इस चित्र में हम देख सकते है इस एकेडमी में स्टूडेंट पढने कि कोशिश कर रहे है यानी ये लोग एक एग्जाम कि कुछ तयारी कर रहे है जो इस एकेडमी में--

आम जनता को हम देख सकते है महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी निचे बिछायी गयी दरी पर बेठ है।

इस चित्र में हम देख रहे है ये एक रेस्टोरेंट कि तस्वीर है जहाँ पर बच्चे खाने पिने और बड़े भी या पर खाने पिने का स आते है और यहाँ पर इंजॉय करते है।

क्योकि इस ब इतने बड़े जहाज को हैंडल करने के लिए इसको सा सब समान वगैरह रोज खाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता होगा।

दिए गये चित्र में हम देख सकते है यहाँ पर गार्डन यानि एक बगीचे की सफाई की जा रही है।

ये जो सफाई करने वाला ये जो माली है इस पत्तो को झाड़ू द्वारा एक किनारे कर रहा है।

जब भी तेज हवा चलती है जो सूखे हुए पत्ते होते है वो पेड़ो कि शाखों से और हवा के जोर से गिर जाते है और सब जहग पत्ते ही पत्ते हो जाते है।

इस बिल्डिंग में हम किसी बिल्डिंग का यानी किसी इमारत का कॉरिडोर देख रहे हैं यहां पर गोलाई की आकार में कुर्सियां लगी हुई हैं।

सुना जाता है और उसे ज्ञान लिया जाता है जिसे हमारा जीवन शान्ति से और ब समृद्धि से भर जाता है।

यहाँ नज़ारा किसी एमयूसमेंट पार्क का है जहा पर पत्थरों से बोहोत अच्छी कारीगरी कि गयी है।

उनके टुकड़ों को यूज करके बहुत ही अच्छा कारीगरी बनाई गई है और एक इस पत्थर को ही इस्तेमाल करते हुए एक युवक बनाने की कोशिश बच्चा बनाने की कोशिश की गई है।

और इस प युमीयुजमीन पार्क के पीछे हम पेड़ ही पेड़ नजर द आ रहे हैं चारों तरफ पेड़ ही लगे हुए--

और यही पे बस सबको अपनी मंजिल पर छोड़ कर यही पोचती है।

और उनको और प्रेरणा दे रही है उनको और मोटीवेट कर्र रही है और भी अच्छा काम करे --

नि पूजा करने के लिए अपने प्रभु को याद करने के लिए यहाँ पर कोई झालसा या कोई स्म्हारोह है।

इसलिये इस जगह को बोहोत अच्छे से सजाया गया है और गुब्बारों का इस्तेमाल किया गया है।

आप देख सकते है ऊपर घर ऊपर चर्च कि छत पर आप स गुबारे है जो सफेद नीले और गुलाबी कलर के है जिनको यूज गिया गया है इस्तेमाल किया गया है।

आप देख सकते है इसके पीछे छोटे छोटे कमरों की बाउंड्री बनी हुई है और पीछे जो दिवार है--

और सभी ने हॉस्पिटल की यूनिफार्म पहन रखी है और मुंह पर मा मास्क लगा रखा है।

इस चित्र में हम देख सकते है ये एक पेट्रोल पम्प का चित्र है जहाँ पर गाडिया खड़ी है और गाडिया पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर खड़ी है।

चाहे वहां कोई भी हो साइकिल को छोड़ के आज कल सभी वाहनों में पेट्रोल डलवाना पड़ता है।

सड़क के किनारे एक खम बिजली का खम्बा और चारो तरफ पेड़ ही पेड़--

मेरे सामने एक पार्क की तस्वीर है पार्क में हम देख सकते है हरी भरी घास है और और भी बेठने के लिए जगह बनी हुई है।

और पार्क में कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं मेरी आँखों के सामने जो दिख रहा है मुझे--

फुल नज़र आ रहे है और नारियल के पेड़ लगे है चारो तरफ पेड़ ही पेड़ हरियाली का ही वातावरण है।

हमको किताबे है किताबे तराजू में नजर आ रहे है यानी इसको देख कर इस दूकान का साइज़ देख कर हमको पता चलता है कि ये बहोत बड़ी दुकानों कि स शॉप है।

ये फिर से एक बहोत बडा हमको मैदान दिख रहा है मैदान के चारो तरफ से ईंटो से यानी स बाउंड्री बनाई गई है।